यहां पर हमें कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

यह दृश्य हमें में हमें कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे कुछ गमले भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास में एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

पास में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य हमें किसी शूटिंग क्लास का नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें कुछ बच्चे शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे है।

यह दृश्य हमें किसी टॉयज शॉप का नजर आ रहा है।

पास में बहोत सारे कैमरा मैन भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस पास हमें लाइट्स भी जलती हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें बाहर बहोत सारी डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हमें बहोत सारी लाइट्स लगी हुईं दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर हमें मंदिर का पूजा का समान भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा हैं।

नीचे बहुत सारी घास भी नजर आ रही है।